है और जय माँ भगवती पूजा समिति लिखाया --

यहां एक गाड़ी की ऑटो सेंटर दिखाई दे रही है जिसके कुछ किनारे में बहुत से मोटरसाइकिल को लाइन से किए हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी प्रकार का शौक दिखाई दे रहा है जिसके नीचे में एक मूर्ति बनी हुई है और उसमें कुछ भगत सहित शहीद लिखा हुआ है और एक व्यक्ति उसके किनारे में सोया नज़र आ रहा है कंबल ढका के उसके किनारे में एक और भी कंबल है और कुछ दूर में कुछ घर सब भी दिख रहे है कुछ --

ऊपर में कुछ लोहे सा बना हुआ है और बिजली के तार सब भी लगे हुए नजर आ रहे हैं और दिख रहे हैं।

यहां एक बहुत बड़ा कॉलेज नजर आ रहा है जो कि बहुत ही दो-तीन मंजिल का है उसके नीचे में सरस्वती माता के चित्र भी बनी हुई है बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं और व्यक्ति लोग नीचे बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हुए हैं बाइक भी दिखाई दे रही है ।

उसके किनारे में नदी भी दिखाई दे रही है और सब दिख रहे है और सब पूजा करते नज़र आ रहे है कुछ लोग मांग टिका भी लगाये हुए है।

और घर सब भी दिखाई दे रहे है।

यह जीम है जिसके अंदर में बहुत सारे लोग कसरत करते नजर आ रहे हैं बड़े-बड़े उपकरण हैं --

लिखा हुआ नजर आ रहा है।

और कुछ ऊपर लकड़ी के भी बने नजर आ रहे हैं और अच्छे से दिखाई दे रहे हैं जमीन सब कुछ दिख रहा है और लाइट की भी व्यवस्था की गई ।